पानी की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती होगी।

यह दृश्य पुलिस स्टेशन के बाहर का दिखाई दे रहा है।

यह एक गार्डन का दृश्य है।

यहाँ पर सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग --

इसके सामने एक एंबुलेंस खड़ी हुई है।

इस पर लिखा है कार मेकेनिक एरिया ।

सोफे के ऊपर काफी तकिये भी रखे हुए हैं।

था उनके बराबर में गोबी वे आलू भी रखे हुए है।

यह दृश्य किसी गोडाउन का है।

जहां पर काफी सामान रखा हुआ है।

बाहर एक तस्वीर में कुछ लोग व एक डेक्स दिखाई दे रही है।

इस चित्र को देखकर ऐसा प्रतीक होता है जैसे कि यह किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल का दृश्य है।

यहां पर बराबर में कुछ बॉडी बिल्डर के चित्र दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है।

दूर पर कुछ इमारतें और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी चिकित्सक की दुकान लग रही है।

इस चित्र में किसी व्यक्ति के हाथ की उंगलियां भी दिखाई दे रही है।

स्टेज के बराबर में हरे रंग का मैट बिछा हुआ है।

यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे व झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक सड़क का दृश्य है।

सामने पेड़ वह झाड़ियां भी है।

जिस पर सफेद रंग की पट्टियां बनी हुई हैं।

शायद किसी दूसरे कमरे को अलग करने के लिए--